यहां पर बहुत सारा गाड़ी भी लगा हुआ है एक कार भी खड़ी है।

यहां पर एक गेट भी है और यहां पर बाहार में एक कुर्सी भी है।

दरवाज़ा के साइड में एक बड़ा सा मशीन भी है।

और यहां पर बहुत सारा हिरन खड़ी है और बहुत सारे हिरन खाना खा रही है और यहां पर--

यह एक सुपर मार्केट है और यहां पर दो गाड़ी खड़ा है और यह की स्कूटी और एक मोटरसाइकिल।

पर बहुत सारा पर्दा भी है और यहां पर एक अलमारी भी है।

यहां पर बहुत सारा आदमी बैठा हुआ है और एक आदमी के साइड में टूल फैन भी है।

यहां पर बहुत सारा बैलून भी लगा हुआ है।

यहां पर दो आदमी है और एक आदमी ने पाइप पकड़ा हुआ है और एक आदमी ऐसे ही खड़ा है।

यहां पर बहुत सारे लाइट भी लगाया गया है और इस बिल्डिंग का कलर वाइट कलर का है।

जिसने पीले कलर का कुर्ता पहना हुआ है और टोपी भी पहना हुआ है।

यह एक सैलून है और यहां पर बहुत सारा आदमी है।

यह एक साइकिल का शोरूम है और यहां पर बहुत सारा साइकिल लगा हुआ है।

पीछे में बहुत सारा पत्थर भी है।